यहाँ पे हमे एक शप के अंदर बोहोत सरे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए नजर आ रहे है यहाँ पे गिटार है पियानो है उड और अलग अलग प्र आ ढोल भी रखा हुआ है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमे मिल जाते है।

सामने हमे एक लाल कलर का बोर्ड दिख रहा हे एक छोटासा घर जयसा ऑफिस जयसा बना हुआ नजर आ रहा हे ऑफिस के अंदर दो गोनी राखी हुये अंदर दिख रही हे बाहार एक चप्पल उतार गया हे गेट पे एक गोनी राखी गई हे और एक लड़का बाहार खाडा होकर के झाडु लागाते हुए नाजार आ रहा हे खिडकी बनी गयी हे।

और यहाँं पर कुछ बच्चे हैं जो नित्य करते हुए नजर आ रहा है डांस करते हुए दिख रहा है जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है और पूरे अच्छे से सज धज के आए लोगों की काफी भीड़ है स्पीकर लगा हुआ है

रखे गये है यहाँ पे कुछ आदमी मजदुर दिख रहे है एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है पीछे एक घर बना हुआ दिखाई जिसका कलर सफेद किया गया है बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहा है ।

नदी के साइड में बहुत ही बड़ा सा पत्थर रखा। पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ है जो फो फोटो क्लिक करवाता हूआ नजर आ रहा है ओर नदी के किनारे पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं एक तरफ से बदल टच होता हुआ नजर आ रहा जो बहुत ही प्यारा नजर लग रहा है यह।